यह बहुत सारे गमले हैं गमले बहुत सुंदर हैं।

इसमें तांबे के दिए और लोटे हैं।

एक बेंच पर दो औरतें बैठी हैं।

इसके अंदर बहोत बड़ी दीवारें हैं।

यह एक मैरिज हॉल हैं इस हॉल को बहुत सुंदर सजाया गया हैं इसमें बहुत अच्छी लाइट्स लगी हैं।

यह एक सेरामनी का सीन है यह बहुत बड़े हॉल में हैं--

इसके अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

यह मशीने है जिनके पंखे लगे हैं।

और बहोत सुंदर डिजाइन किए गए हैं।

इसमें एक लड़की परफॉर्म कर रही है एक आदमी एक साइड में उसकी वीडियो बना रहा है।

इसके अंदर दो खिड़कियां बिल्कुल टूटी हैं।

यह एक पहाड़ी जगह है। यह जगह बहुत सुंदर है।

एक आदमी पाइप से पानी डाल रहा है।

जैसे दौड़ने के लिए हाइट बढ़ाने के लिए--

यह स्टैचू बहुत ऊँचा बना हुआ है।

और उसमें कई पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके सामने ही कुछ एक फ्रिज रखा है जिसके अंदर कोकाकोला रखी हुई है।

यहां पर बहुत सुंदर मौसम है।

आसमान में थोड़े थोड़े बदले हैं।

यह एक खेल का मैदान है इसमें बहोत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं।

साथ में एक और छोटा पौधा हैं।